और यहां पे काले रंग की दीवार है।

एक लाल रंग की कार नजर आ रही है।

एक दरवाजा है जोकि ऑरेंज कलर का है और ब्लैक कलर का है।

इस फोटो में पीछे लिखा है द सिटी कैफे आगे एक लड़का खड़ा है जिसने पैंट पहना है।

और यहां पर कार खड़ी हुई है काफी सारी लाल सफेद रंग की कुछ दूर दूर तक पेड़ दिखाई दे रहे है।

दो ने पीले रंग की शर्ट पहनी है पीछे कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे--

और फर्श पे मिट्टी है और थोड़े पौधे हैं।

लकी बेल्ट हाउस नीचे लिखा है लेदर की बेल्ट --

तीन यहां नंबर लिखे हैं नाइन फाईव फ़ोर वन नाइन फाईव डबल नाइन वन नाइन फाईव फ़ोर वन नाइन फाईव ट्रिपल नाइन टू ।

फर्श पे काले रंग की टाइल लगी है।

सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है सफेद रंग की।

मोबाइल नंबर इन्होंने अपना दिया हुआ है और एक इन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी लिखा हुआ है।

सामने एक स्टेज दिखाई दे रही है।

और पीछे येलो कलर की डेकोरेशन है।

इस फोटो में काफी सारे वाटर पार्क वाले झूले दिख रहे हैं।

बड़ी लंबी लंबी हैं छोटी वाली भी हैं।

कुछ लाल पीली काले रंग की घड़ियां है।

नीचे लिखा है टोटी और एक नंबर लिखा है नाइन एट --

हिंदी में लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है --

और यहां पर पीछे लाइटें लगी हुई है नीले रंग की--

इस फोटो में सामने लिखा है न्यु इंडियन कोचिंग सर्विस हॉस्टल फैसीलीटी ।